यहाँ पर एक बड़ी मशीन भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आयकर भवन बिलासपुर--

प्रदेश यहाँ पर वहाँ कुछ मिट्टी सी दिखाई दे रही है कुछ जीपे भी रखी हुई हैं यहाँ पर कुछ-- गाड़िया भी रखी हुई हैं यहाँ पर--

यहाँ पर एक फुल भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर बिजली का खंबा भी दिखाई दे रहा हैऔर यहाँ ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।